मुझे लग रहा कोई --

फोटो इडिटिंग किए गए है बहुत अच्छे से रही है बहुत अच्छे से सजाये गए हैं।

मुझे लग रहा है गाड़ी में डी.जे. लोडिंग किए हुए है बहुत ही अच्छी सेटअप लगाए है।

ये जैसे लग रहा है कोई परिसदन जामताड़ा है।